दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बॉर्ड पर गीतांजलि कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है। सामने चेयर नजर आ रही है। दीवार पर एक फोटो दिखाई दे रही है। दीवार पर एक घड़ी नजर आ रही है। यहां पर काफी सारी चेयर नजर दिखाई दे रही है।

ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है प्ले ग्राउंड काफी बड़ा दिखाई दे रहा है प्ले ग्राउंड में काफी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं प्ले ग्राउंड में टेंट लगे हुए हैं।

यहां सामने कुछ गिट्टियां नजर आ रही हैं यहां पटरियों के पास कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां पर काफी सारा बड़ा अ सिंड़ीया दिखाई दे रही है यहां पर काफी सारे खंबे नज़र आ रहे हैं खम्भों में काफी सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ में कुछ पत्तियां नजर नहीं आ रही है बाजू में एक पेड़ काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।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

एस्टूल पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं अंदर एक लाइट जलती नजर आ रही हैं सामने कुछ ट्रे नजर आ रही हैं ट्रे में कुछ बॉटल रखी हुई हैं सामने काफी सारे पैकेट टंगे नज़र आ रहे हैं।

दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म पर एक ट्रेन खड़ी नजर आ रही है यहां पर काफी लोगों की भीड़ दिखाई बहदे रही है यहां पर कुछ शॉप भी नजर आ रही है यहां पर कुछ नाल दिखाई दे रहे हैं।